और विकेट मे गाड़ा गया आदमी नहीं है।

यह जाना पहचाना जगह है लेकिन पता नहीं कहाँ का ज जगह है यहाँ पे घर बनने के लिए चि चिन्हा पड़ाया हुआ है पिल और रस्सी भी टाना हुआ है यहाँ पे चार आदमी है।

जो रेड कलर का धोती पहना हुआ है।